चेयर वगैरा रही है एक बेंच पे आस पास चार चेयर रखी है चार लोग बेठ सकते है उसपे।

यहा सामने पर्दा रखा लगा हुआ हुई टीवीवाला ऊपर लाइट लगी हुई है। ऊपर काफी सारे फॅन लगे हुए है।

डस्टबिन रखा हुआ है काफी सारी चेयर वेअर वगेरा रखी हुई है काफी सारे लोग खड़े हुए है।

एक बोर्ड दिख रहा है उसमे उसमे चार्जर मार्जर वगेरा लगे हुए है पाइप माईप वगेरा ऊपर नीचे जा रहा है।

ये ताजमहल सा बना हुआ है उसपे व्हाईट कलर टाइप का पेंट पुता हुआ है।

यहाँ पर बहुत सारी बस खड़ी हुई है बारिश हुई थी रोड पर पुरा पानी पानी भरा हुआ है।

एक घर घर टाइप का बना हुआ है मस्जिद जैसा उसमे गेट जगह जगह गेट गेट टाइप के बने हुए है।

इसमे बीयर वियर वगेरा और दारू वारु की वगेरा की बोटल दिख रही है और उसपे कोर्नर पे एक दारू की --

पार्क है पार्क मे डस्ट्बिन रखी हुई है पार्क मे आने जाने के लिये रस्ता भी है बहुत सारे पेड पौधे भी लगे हुये है पार्क मे एक खजूर का पड़े भी लगा हुआ है।

कार खडी हुई है गेट वगैरा लगे हुए है इस्कूटी खडी हुई है घर के सामने बहुत सारी जगह पडी हुई है।

उसमे अलग-अलग तरह के पेड़ लगे हुए है उसमे कुछ छोटे-छोटे पेड़ भी लगे हुए है बहुत हरे बरे पेड़ है वैगेरे लगे हुए है।

यहा एक बोर्ड लगा है पी _एन _पी _एन लिखा हुआ है छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज--